ग्राउंड है जिसके अंदर चार लडकीया दौड़ रही है जिन्होने तीन लड्कीयोने ड्रेस पहनी हुई है तथा एक लड्कीने व्हाइट ड्रेस पहनी है।

बगल मे एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सरपर कैप तथा स्वेटर पहना हुआ है। साइड मे एक औरत खड़ी है। घर का दरवाजा खुला हुआ--

काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने मु पर मास्क पेहना हुआ है तथा एक केपरी व बनियान पेहणा है इसने अपने हात मे रेड कलर का धागा पेहणा हुआ है बगल से एक व्यक्ति जा रहा है।

एक कार है जिसकों चैन की मदत से बांध कर उपर उ--

वह पिक्चर्स बने हुए है।

यह एक अ प्रतिमा बनी हुई है जिसका आकार बहुत बड़ा है सामने एक रैलिंग निकली हुई है आस पास पेड़ पौधे लगे हुए है।

तथा गेट बने हुए है गेट के बगल में एक बड़ा गेट है तथा आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे--

एक लोकल बस रखी हुई है। सामने एक दीवार बनी हुई है। जिसपर बहोत सारा कूड़ा लगा हुआ है। उसमे पेड़ पौधे उगे हुए है। तथा टोवर लगे हुए है। व बिल्डिंग्स बनी हुई--

कुछ निचे घांस उगी हुई है। तथा आसपास जाली की मदद से बॉउंड्री बनायीं गयी है। एक व्यक्ति अपने हाथ मैं सामान लिए जा रहा है। धुप निकली हुई है।

नीचे घास उगी हुई है तथा आसपास पेड़-पौधे लगे हुए व हल्की धूप निकली हुई है।